जो दिवारो के पास ए एक आदमी ढोलक बजा रहा है और अगल बगल जो खड़े हुए है वो डांस कर रहे है अ हरे भरे पेड़ पौधे है बादल सफ़ेद है।

सा गार्डन है गार्डन मैं हरे घांस जमी हुई है अगल बगल हरे पे-पेड़ पौधे है सो पत्तिया लगी हुई है काले कलर का गेट लगा हुआ है बगल मैं एक मकान बनी हुई है।

और गेट के बाहर एक आदमी का इस्टेच्यू बना हुआ है जो आसमानी कलर का कपड़ा पेहना हुआ है।

अगल बग-गल रेलिंग की गयी है हरे भरे पेड़ पौधे है और बादल नीला और सफ़ेद है।

पंखे लगी हुई है और सामने स-सामने कुर्सी और टेबल काउंटर पे रखी हुई है दो लॅपटॉप रखी हुई है ऊपर दो टीवी यां ए-टीवी यां लगी है।

कुर्सियाँ रखि हैं और लड़के खड़े हुये हैं औरते खडी है।

एक हॉल हैं जिस हॉल मे अगल बगल दिवारें हैं खिड़कियाँ लगी हुई हैं लगी हुई हैं और लाइट लगी हैं ।

जिस मे सभी बच्चे टेबल और कुर्सियों मे बैठे हुये हैं पढ़ाई कर रहे हैं।

अगल बगल मकाने बनी हुई हैं हरे पेड़ पौधें हैं बादल काला और सफेद हैं।